यहां लगभग कुछ चौबीस पच्चीस बच्चे बैठे हुए हैं एक मैम बैठी हुई--

और सैलून के स्टिकर्स लगे हुए है जिसमें वन साइडेड कट दिख रहें है और कुछ लड़कों के पैर दिख रहे है और सलून के अंदर --

आजू बाजू में अ बहोत सारे फोटो हैं अ पेड़ हैं जो कुछ ब्लैक कलर के दिख रहे हैं।